अ जहां पर एक चेयर रखी हुई है कांच की वो लगी हुई साइड में स्टैंड जैसा।

यह एक अह कृषि का ढाबा दिखाई दे रहा है।

अं एक टापरी दिखाई दे रही है लकड़ी की बनी हुई पानी का मौसम दिख रहा है ज़मीन गिली दिख रही है।

अं पेड़ दिख रहा बड़ा वाला चीनियों से धुआं निकलता दिखाई दे रहा है दूर दूर तक बड़ा पावर प्लांट टावर दिख रहा हैं।

यह एक होटेल है अ होटेल ऋषना।

और ऐसा लग रा है इलेक्ट्रिकल शॉप हो मैकेनिक वाली।

पत्थर वत्थर दिख रहे खिचड़ी जैसा दिख रहा है।

यह एक किस्चन अनाउंसमेंट दिखाई दे रहा है जहां पर एक--

जहां पर टेबले बनती हुई दिखाई दे रही है एक आदमी नीचे बैठा है कुछ पड़ा है उसके पास।

यह एक होटल दिखाई दे रही है जहां पर--

अह मछली किसी बारीक बारीक में दिख रही कटी हुई।

बीच से आते हुए बड़े बड़े झाड़ दिख रहे हैं जंगल है।

यह एक जंगल दिख रहा है बहोत बड़ा गहरा जंगल दिखाई दे रहा है।

जिसमें पेड़ पर कोई भी पत्ती नहीं दिखाई दे रही है बहुत कम पत्तियां है।

पीछे खजूर का पेड़ लगा दिख रहा है। केले के पेड़ लगा हुआ है। नीचे ड्रम रखी हुई है नीली पानी की।

बड़े बड़े ट्रक दिखाई दे रहे हैं बादल दिख रहे हैं जाते हुए बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

और कोई हाथ देख के बैठा है लाइट्स दिख रही है पंखे दिख रहे हैं।

टैटो पिकनिक जैसा कुछ दिख रहा है जहां पर टैटो बनता है। इनको का है।

यह एक आ निर्त्य स्टेज दिख रहा जहां पर एक--